यहाँ एक बड़ा सा मैदान नजर आ रहा है जिसमें पार्क दिखाई दे रहा है आस-पास पेड़ नजर आ रहा है पेड़ो का रंग हरा दिखाई दे रहा हैं।

सफेद रंग के जूते पहने हुए हैं काले रंग का एक पजामा पहना हुआ है नीचे जमीन में --

कांच का रंग सफेद दिखाई दे रहा है सड़क का रंग भूरा नजर आ रहा है गेट दिखाई दे रहा है गेट का रंग काला नजर आ रहा है गेट लोहे का है।

दे रही है उसका रंग लाल नजर आ रहा है टेबल दिखाई दे रहा है टेबल पर बहुत सारी --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

दे रहा है आसमान का रंग सफेद नजर आ --

हां एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।

ऊपर मशीनें दिखाई दे रही हैं ए.सी. की जिसका रंग सफ़ेद नजर आ रहा है सड़क नजर आ रही है सडक का रंग भूरा दिखाई --

दे रहा है या जमीन पर नाचती हुई नजर आ रही है जमीन का रंग बूरा दिखाई दे रहा है।

हरा दिखाई दे रहा है मैदान में जमीन नजर आ रही है जिसमें हरी घास दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारी जनता नजर --

नीचे हरियाली नजर आ रही है पेडॊं का रंग हरा दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान नजर आ रहा है बीच का रंग सफ़ॆद दिखाई दे रहा है।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

एक बोतल दिखाई दे रही है जिसका रंग पीला नजर आ रहा है वो प्लस्टिक की है।

यह एक पानी का तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें बीच में पूल नजर आ रहा है पूल पतरका दिखाई दे रहा है उसका रंग भूरा नजर आ रहा है उसमें एक जाली दिखाई दे रही है जाली लोहे की नजर आ रही है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ो का रंग हरा नजर आ रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग सफ़ेद --

पूलो से सजावट नजर आ रही है नीचे जमीन लगाए दे रही है।

हरा दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान नजर आ रहा है आसमान का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है जिसपे एरोप्लेन नजर आ रहा है उसका रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है उसके आसपास पंखुड़ियाँ नजर आ रही है जो लोहे की दिखाई दे रही है ऊपर आसमान नजर आ रहा है।

आसमान का रंग नीला नजर आ रहा है दो --

यहाँ एक पहाड़ दिखाई दे रहा है पत्थर नजर आ रहे है जिनका रंग भूरा दिखाई दे रहा है आ --

जमीन का रंग भूरा नजर आ रहा है जिसमें मिट्टी दिखाई दे रही है मिट्टी का रंग पीला नजर आ रहा है।

यहाँ एक सड़क नजर आ रही है सड़क के सामने घर दिखाई दे रहा घर का रंग सफेद और पर्पल नजर आ रहा है दरवाजा दिखाई दे रहा दरवाजा लकड़ी का --

दे रहा है लाइटे नजर आ रही है लाइटो का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

यहाँ एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में हरियाली नजर आ रही हैआस-पास पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ो क रंग हरा नजर आ रहा हैं ऊपर --

पेड़ों में फूल दिखाई दे रहें हैं फूल का रंग पर्पल पीला दिखाई दे रहा है आसपास हरियाली नजर आ रही है नीचे जमीन दिखाई दे रही है।

एक पीली बिल्डिंग में खिड़कियाँ नजर आ रही हैं ऊपर छत में एक टंकी दिखाई दे रही है।

यहाँ एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है जिसमें ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग आसमानी नजर आ रहा है अस --

हरा नजर आ रहा है नीचे जमीन दिखाई दे रही है जमीन का रंग हरा दिखाई दे रहा है जिस पे फर्श बिछा हुआ है।

ऊपर जाली दिखाई दे रही है जाली का रंग काला नजर आ रहा है जाली लोहे की दिखाई दे रही है पेड़ नजर आ रहे हैं पेड़ो का रंग --

यहाँ एक जिम दिखाई दे रही है जिसमें दीवारें नजर आ रही है दीवारों का रंग हरा दिखाई दे रहा है दीवार में जालियाँ नजर आ रही है जाली लोहे की दिखाई --

यहाँ एक पानी का पुवारा दिखाई दे रहा है उसका रंग सफेद नजर आ रहा है उसके आसपास --

जालियां नजर आ रही है जालियां स्टील की दिखाई दे रही है उसका रंग सफेद नजर आ रहा है उसके अंदर नीले रंग की दीवार दिखाई दे रही है।

ऊपर ये लकड़ी का रंग लाल और बूरा दिखाई दे रहा है यह।

यहाँ एक सड़क नजर आ रही है सड़क में एक दरवाजा दिखाई दे रहा है दरवाजा एक लोहे का नजर आ रहा है जिसका रंग काला दिखाइ दे रहा है बगल में खम्भे दिखाई दे रहें हैं जो किसी में --

बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का रंग व्हाइट नजर आ रहा है ऊपर आसमान नजर आ रहा है आसमान का रंग सफेद दिखाई दे रहा है नीचे सड़क नजर आ रही है सड़क का रंग भूरा दिखाई दे रहा है।

दरवाजा नजर आ रहा है दरवाजा का रंग काला नजर आ रहा है।

एक टेबल दिखाई दे रही है टेबल प्लास्टिक की नजर आ रही है उसका रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है नीचे जमीन पर हरे रंग का --

आस-पास घर नजर आ रहे हैं दीवार का रंग भूरा दिखाई दे रहा है नीचे दुकान नजर आ रही है दुकान में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसका रंग लाल और सफेद नजर आ रहा है।